लाइटें जल रही हैं | आदमी दिख रहे हैं | कैमरा दिख रहा है |

इसमें बच्चे दिख रहे है किताबें दिख रही हैं बैग दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है।

औरत भी दिख रही है।

बैग दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

घड़ी दिख रही है। फोटू दिख रही है।